और कुछ यहां पर बेचने वाले भी है।

बनाया गया है सारे अरेंजमेंट्स उस जगह अह रूम में किए गए हैं।

और आसपास कुछ हरे भरे घास दिख रहे हैं।

और इस शॉप की डोर्स बंद हैं।